हार पांदया दी फोटो खींचाई है।

वाइन शॉप विच काउंटर के नैपकीन आते--

यह एक तेजा बुक स्टॉल --

ओम फूड प्लाजा ढाबा--

सड़क की तस्वीर है।

सड़क में एक बाइक और एक कार --

यह एक ट्रक के ऊपर रखी--

यह एक चर्च की तस्वीर हैं।

बहुत सारे लोग आते हैं।